ये एक भवन दिखाई दे रहा है जिस भवन में बहोत सारी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है।

लाइट वाला खम्बा दिखाई दे --

जेंट्स लोग खड़े हुए हैं लेडीजे खड़ी हैं रोड दिखाई दे रहा है।

बादल दिखाई दे रहे हैं ब्लैक व्हाइट कलर के ग्रीन कलर के पेड़-पौधे रोड दिखाई दे रहा है रोडों पर लकड़ी पड़ी हुई है बस खड़ी हुई है।

एक मकान दिखाई दे रहा है आंगनवाड़ी के स्वच्छ सर्वोचन दो हज़ार बाइस।

गाड़ी है स्कूटी है दुकान में एक जेंट्स लोग खड़े हुए हैं स्कूटी पे एक लड़का चला रहा है एक गर्ल्स बैठी हुई --

नी भवन दिखाई दे रहा है उस भवन मे बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं एक जेंट्स खड़ा हुआ है।